यह एक सैलून है और सैलून में बाल काटा जाता है । लेकिन ये बाल कटाने ही वाले है ।

यह एक नदी है और अ नदी के उपर में एक बोहोत बड़ा ब्रिज बना हुआ है और ब्रिज के उपर से यहाँ पे सभी लोगो को सुविधा होता है आने-जाने में। है कि जब ये नदी में पानी भर जाता है तो फिर सुविधा नहीं रहता है तो--

यह एक छोटा-सा क्लासरूम है जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता हैं और एक टेबल भी है नीचे बैठने के लिए। छोटा-सा पीछे में एक पेड़ बना हुआ है नोटिस चिपका हुआ है वहाँ पे और काँच का ग्लास लगा हुआ है खिड़की में।